कोई हंस है कोई चीज-कोई चीज न देख रयो है ओर कोई मोटरसाइकिल ने कन खडयो है।

और बिके लार एक बड़ों सारो पोस्टर लाग रेयो है क्यानको बठ बोला सारा तार पडया है लाइटा लाग री है।

और बीगे कन्ने बड़ी सारी दूब लागेड़ी है हरी हरी।

और बढ़ बी के आगे बोहोत सारो हरे हरे घास सो लागेडो है।